कोई पिक्चर में बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

और उप्पर आसमान में बहोत सारा बादल भी दिखाई दे रहे--

आस पास में इलेक्ट्रिक पोल भी बना हुआ है।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

ऊपर में बहुत सारा लाइट्स भी लगा हुआ है।

और नीचे जमीन में पानी भी फैला हुआ है।

और छोटा छोटा पत्थर लोग भी बिखरा पड़ा हुए है।

हमको ये तस्वीर में चर्च का बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

पिक्चर में तीन टेंट बना हुआ दिख रहा है।

सामने में रस्ता भी बना हुआ है और रास्ता में तीन गाड़ी भी चल रहा है।

हमको इ तस्वीर में एक बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

जिसपे बहोत सारा पेड़ पौधा लोग भी उगा हुआ है।

सामने में एक गेट भी बना हुआ है।

ऊपर में इलेक्ट्रिक वायर लोग भी टंगा हुआ है।

और सामने ग्राउंड में बहुत सारा पत्ता भी फैला हुआ है।

कोई तस्वीर में कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

और कोने में बहोत सारा लोग भी बैठा हुआ है।

हमको ये तस्वीर में बड़ा सा फुटबॉल ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

और चार पिंक कलर का बोतल और स्टील मग भी रखा हुआ है।

हमको ये पिक्चर में एक बुक स्टोर दिखाई दे रहा है।

और दीवार में क्लॉक और स्विच बॉक्स भी लगा हुआ है।

और सामने में हैंड वाश लिखा हुआ है।

कोई एक तस्वीर में टीना से बना हुआ घर दिखाई दे रहा है।

सामने में बहुत सुंदर सुंदर फुल लोग रखा हुआ है।

और नीचे में कार्टून का डब्बा भी रखा हुआ है।

सामने में दो वाइपर भी रखा हुआ है।